मूर्ति खाली है यहां पर डेनिंग टेबल है यहां पे अलमारी में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहा पे दो बुलडोज़र है बुलडोज़र के सामने कुछ रखा हुआ है वही पे जे_सी_पि ह--

यहाँ पे एक हॉस्पितल है हॉस्पितल में मरीज़ को रखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे करागार रखा गया है यहाँ पे लोग--

यह क्लास रूम बहोत ही देखने में रेमिंग है जोकि बहुत ही अच्छा सुंदर से सजाया गया है।

यहाँ पर ब्लैक टाइप का कुर्सी है और वाइट टाइप का डेनी डेनी है।

यहाँ पर एक स्टेज है स्टेज को सझाया गया है डी_जे से सझाकर का फिल्म लगाया गया है।

यहा पे लाइट लगाया गया है बहुत सारे डी_जे और लाइट को सजाबत किया गया है यहा--

फिलिंग का पोस्टर लगाया गया है यहाँ पर ऊपर से छत है।

ट्रक के कुछ पीछे लोग खडा हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप दो हैं ऊपर से छत है यहाँ पे वाइट कलर का कार है ब्लॉक कार है।

यह एक फील्ड है इस फील्ड में लोग खेलते हैं यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे कार लगे हुए हैं फील्ड में एक बच्चा खेल रहा है।

यहां पे तीन आदमी है दो ट्रैक्टर है एक ग्रीन कलर का ट्रैक्टर हैं एक ब्लू कलर का ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के पीछे जंगल हैं।

ट्रेक्टर की ग्रीन कलर का पिच्छे एक आदमी ट्रेक्टर को सर्विसिंग कर रहा है।

यहाँ पे हरे भरे खरियाली खेत हैं यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं पौधे के बीच में एक रोड टाइप का है।

यह एक छत है छत पर आदमी है जो की नल से पानी भर रहा है यहां पर बहुत सारे छत दिख रहा है जो की फोटो में देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है।

यह एक प्रकार का गुफा है जो की पहाड़ से बनाया गया है गुफा के बीचों बीच एक इंसान खड़ा है जो की ब्लैक कलर का चश्मा पहना हुआ है।

जोकि गुफा देखने में बहोत ही ज्यादा इमेजिंग है यहाँ पर होने वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है जोकि लोगो को गुमना चाइये।

यहाँ एक फ्रूट का दुकान है जोकि कहि प्रकार का फ्रूट रखा हुआ है बनाना एप्पल मोसम्बी--

भी रखा हुआ है उसके पीछे ट्रक खड़ा हुआ है जोकि दिखने में फोटो बहोत ही ज्यादा इमेजिंग और सुंदर है।

यह एक मिठाई क दुकान है मिठाई बहुत ही अच्छा तरीका से सजाया गया है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा है खाने लायक है।

यह शीशा जिससे खराब ना हो यह मिठाई बहुत ही देखने में अमेजिंग है जो की रेड कलर और क्या बोलते हैं उसको--

नड्डी के एक हाथ में कुर्सी है जो की छतरी का यहाँ रखा गया है यहाँ पर बेठने के लिए --

यहाँ एक घर है। घर को बहोत अच्छा तरीका से सजाया गया है। फूल--

है बोहोत ही अच्छा दिखने में लग रहा है यहाँ पर कुछ दिवा रखा गया है यहाँ पर गिटार है।

सजाया गया है जो कि ग्रीन कलर के कपड़ा से सजाया गया है।

येल्लो कपड़ा सझाया गया है यहाँ पर पेड़ पोधे रखे गय है यहाँ पर फुल रखे गय है यहाँ पर एक घर है।

यहाँ पे ब्लैक कलर का ब्लैक कलर का सीढ़ी है व्हाईट कलर का है यहाँ पे घर को अच्छा तरीका से बनाया गया है।

घर के ऊपर एक माइक लगाया हुआ है उसके बगल में ब्लैक कलर का तार गया गया है जोकि लाईट का है वहां पे घर के ऊपर बहुत ही--

यहाँ पे कुछ लड़कियाँ और कुछ बूढ़े लोग हैं जोकि अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं उसके पीछे कुछ फ़ोटो हैं जोकि दीवाल पर टांगा गया है।

येल्लो कलर बहुत सारे कलर है जो कि वाईट कलर भी है वाईट कलर का बहुत ही ज्यादा है घर को अच्छा तरीका--

यह एक राखी का दुकान है राखी के दुकान को अलग अलग टाइप राखी से सझाया गया है।

उसके पीछे बोर्ड पे कुछ लिखा गया है जो की राखी को अमेजीग और अच्छा तरीका से सजाया गया है जो कि ग्राहक और अच्छा तरीका खरीदे।

ये यहा कुछ नोटंकी चल रहा है यहा पे लोग माइक लेकर कुछ भासन दे रहे है।

यहा पे जो केसटे दुआरा सजाया गया है जो की बहुत सारे माइक लगाया गया है।

उसके पीछे एक लेडीज बैठे हुए हैं येलो कलर के जो शर्ट पहेने हुआ है।

यहा घर है यहा पे एक नेता है नेता के बगल में एक आदमी खरा है।

हमारे देश में जोकि सौभाग्य की बात है क्योंकि यहां पे देखने में अच्छा और अमेजिंग लग रहा है।

यहाँ एक फैक्ट्री है यहाँ पर एक फील्ड लग रहा है जिस फील्ड में एक --

हरा भरा बोहोत ही सारा जंगल है इसलिए ये फोटो देखने में अमेजिंग और अच्छा लग रहा है ।

कुछ लिखा गया है बोर्ड पे अल्ट्रा टेक के साथ खुशियों का बरात मतलब यहा पे शादी नही है।

जोकि बेडमिंटन निचे रखा हुआ है बेडमिंटन के बगल में एक बोल है बोल में कचरा रखा जाता है।

लिया है एक फिल है फिल्ड में घास है यहाँ पे हरा भरा बहुत सारे पेड़ पोधे है जोकि देखने में अच्छा है।

यहाँ पे घाट लगा हुआ है वहाँं पे बोहोत सारे पौधे हैं जोकि ग्रीन कलर का घारा है हरा कलर का पौधा है यहाँं पे अच्छा अच्छा घर है यहाँं पे अच्छा अच्छा --

जो की देखने में अच्छा लग रहा है चिल्ली ब्रिज का बोर्ड है यहां पे कुछ लगा हुआ है बै बैंक आफ इंडिया का।

यहाँ एक टायर का दुकान है टायर में बहुत सारे टायर रखा गया है यह दुकान बहुत ही अच्छा तरीका से सझाया गया है।

जोकि देखने में अच्छा और अमेजिंग लग रहा है ऐसे ही लोगों को पार्क टाइप के घर के आगे सुझाना चाहिए जोकि देखने में बहुत सुंदर अति सुंदर--